इस फोटो को देखने पर हमें ये पता चलता है के यह दो बस खड़ी है यहां पे।

पत्थरों की दि दिवार है और बहोत हरे भरे पेड़ है और बहोत सुंदर फोटो लग रही है । यह बहोत --

पर देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि ये दिन के समय में खींची गई फोटो है और बहुत हरी-भरी घासें हैं।

बड़ी खुबसूरत है और बहुत सारा सामान है और व्हाइट कलर की दीवार है और लाइट भी है और बड़ा --